दुकान में कई सारे पुस्तक दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र हटिया रेलवे स्टेशन का है।

छात्र विभिन्न रंगों और पेंसिल का उपयोग करके कागज पर रचनात्मक कार्य कर रहे हैं।

इस चित्र में एक हॉस्पिटल और एक आधे तैयार हुए इमारत का दृश्य दिखा रहा है।

हरे रंग के बोर्ड पर हिंदी में नंदन वाटिका लिखा है जो इस स्थान की पहचान बताता हैं।

यह चित्र सुखदेव पैलेस होटल के मुख्य प्रवेश द्वार का है जिसे गुलाबी पर्दों से सजाया गया है।

बाई और एक बोर्ड पर होटल की सुविधाओं की जानकारी है।

जो गिटार पकड़ा हुआ है।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

ट्यूबलाइट की रोशनी में समान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

यह चित्र एक होटल के कमरे का है जिसमें एक डबल बेड दो कुर्सियां और एक छोटा गोल मेज दिख रहा है।

कमरे में सफेद और गुलाबी गुब्बारे छत और दीवारों पर लगे हैं जो एक उत्सव का माहौल बना रहे हैं।

तस्वीर में इमारत के साथ साथ आस पास के क्षेत्र को भी दिखाया गया है।

घर के बाहर कई लोग खड़े होकर सामने फोटो खिंचवा रहे हैं।

यह चित्र एक विशाल साउंड सिस्टम को दर्शाता है।

उसके बगल में एक सफेद रंग की एस_यू_वी है।

फर्श चमकदार सफेद टाइल्स का बना है।

यह चित्र मां राम प्यारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के प्रतीक्षालय का है।

यह चित्र एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म का है।

रेस्टोरेंट का नाम ईट रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

रेस्टोरेंट के ऊपर काले रंग के बोर्ड पर कैफे ड्रिंक फ्री विद हैप्पी प्लेस सफेद रंग से लिखा हुआ है।

दुकान में विभिन्न प्रकार की टाइटन घड़ियां प्रदर्शन के लिए रखी गई है साथ ही फास्ट्रेक और अन्य ब्रांड की घड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।